अंचल कार्यालय के बाहर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई नजर आ रही है।

अंचल कार्यालय के बाहर एक इमारत दिखाई दे रहा है।

यहां अनेकों प्रकार के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे है।

इस दुकान के अलमारी में बैडमिंटन रॉकेट तथा अन्य खेल सामग्री रखा गया है।

नर्सरी में बहुत सारे पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं तथा कुछ पौधे डब्बे में भी रखे नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में डूबे भी दिख रहे हैं।

के बाहर एक बोर्ड भी टंगा हुआ है।

पार्क में दो हाथी का स्टेचू बना हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यह त्यौहार अधिक से अधिक इस्लाम धर्म में मनाया जाता है।

इस तस्वीर में दो मछलियां का स्टेच्यू भी बना हुआ दिखाई दे रहा है तथा यहां बहुत सारे ग्लास लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां टोयटो का लोगो लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस शोरूम को झालर वाली लाइटों से सजाया गया है तथा यहां रात का समय प्रतीत हो रहा है।

यह तस्वीर किसी दौड़ने वाली जगह की प्रतीत हो रही है।

योगा क्लास में बहुत सारे उपकरण रखे हुए है।

यहां एक आदमी बाइक को रिपेयरिंग करते हुए नजर आ रहा है।

इस बाइक के अगले पार्ट पुर्जा को खोल दिया गया है।

यह यात्रियों को खड़े रहने के लिए कतार बनाई गई है।

संभवतः यह कोई मस्जिद प्रतीत हो रहा है।

इस बैंक के बगल में एक दुकान है जहां बहुत तेज रोशनी जलती हुई नजर आ रही है।

यहां एक आउटडोर बैठने के लिए दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे काले काले अंगूर नजर आ रहे हैं।

कपड़े दुकान में मार्बल लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस सर्विस सेंटर के रूम को सफेद रंग से रंगा गया है।

यहां बहोत सारे लोग बैंड बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं।

रेस्टोरेंट में बहुत सोफे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी लाइब्रेरी के अंदर का प्रतीत होता है।

लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक रखी हुई है।

गोदाम के अंदर बहुत सारे बड़ बोरे ल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस बैंक में टाइल्स लगा हुआ है।